जिसके पीछे एक बहुत बड़ी दुकान दिखाई--

दे रही है और यहाँ मंदिर जैसे में रखी हुई दिखाई --

कुछ बैनर्स दिखाई दे रहे हैं एक ट्रॉली दिखाई दे रही है।

यह एक जिम सेंटर दिखाई--

और दुकानों में लाइट्स लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग भी है।

चटाई डाली हुई दिखाई दे रहे हैं कुछ--

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

कुछ अनानास दिखाई दे रहे है।

आ रहे हैं एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

और कुछ टेंट नजर आ रहे हैं और बहोत से लोग--

जहां पर बहोत सी मछलीयां नजर आ रही है।

जहां पर होटल अमर प्लेस लिखा हुआ नजर आ रहा है और कुछ--

साइड में एक और बैनर लगा है जिस पर--

दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

रास्ता दिखाई दे रहा है और पीछे बहुत सारे पेड़ दिखाई भी दे रहे हैं।

यह एक कमरा दिखाएं दे रहा है जहां पर कुछ शेल्फ में डब्बे रखे हुए--

कुछ बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे मूर्तियां दिखाई दे रही है एक--